यहां पर मुझे बहोत सारे फ्रीडम फाइटर्स की फोटो बनी दिखाई दे रही है।

वे सोलर सिस्टम भीं छपा नजर आ रहा हैं।

और यहां दो व्यक्ति दुकान की तरफ इशारा करते हुए दिखाई दे रहें है।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

एक व्यक्ति काली शर्ट और ब्राउन लोअर में भी नजर आ रहा है।

यह तस्वीर एक शादी के फंक्शन की नजर आ रही है।

यहां एक व्यक्ति पीले और सफेद कुर्ते पजामे में नजर आ रहा है।

यहां एक लड़का बॉक्सर के अंदर दिखाई दे रहा है।

पीछे एक टिन से बनी छत भी नजर आ रही है।

यहां पर हरा और संतरी रंग का स्टेज सजा हुआ है।

और नीचे बहोत सारी लाइट जल रही है।

और एक वॉटर बॉटल भी रखी है।

ये तस्वीर सुधा पार्लर की नजर आ रही है।

बोटल भीं नजर आ रहीं हैं।